और अअ होटल के आस-पास सिउ अ सस एक हअ होटल के आस-पास दो दुकाने बनी हैं।

एक पेट्रोल पंप है वहां पर श्री पति सत्य नारायण पेट्रोलियम ऑयल और उसके नीचे इंडियन ऑयल लिखा है।

और कुछ भक्त अंदर जाके दर्शन कर रहे हैं और कुछ बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं।

होटल श्री नाम से होटल बनी है ऊपर शास्त्री पैलेस लिखा हुआ है।

उनके सीने पर राम जी और सीता माता दिखाई दे रही है।

अअ मशीन दिखाई दे रही है और एक लड़की बनी हुई है जो भागती हुई दिखाई दे रही है।